सामने कि और कुछ गाड़ियाँ रखी गई हैं और कुछ लोग जा रहे है एक कार भी है कार जो है सफ़ेद कलर कि है लोग जो है वो जा रहे है एक खंभा लगा हुआ --